भैया एक ऊँ प्लेग्राउंड है जो काफी बड़ा है यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है बड़ी -बड़ी।

और बहुत से लोग यहाँ पे फोन चला --

यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है व्हाइट कलर की और यहाँ पे एक कचड़े वाले गाड़ी खड़ी हुई है फोर व्हीलर खड़ी हुई है।